फोर व्हीलर गाड़ियां है और किनारे-किनारे में बड़े-बड़े बिल्डिंग बने हुए है कुछ दुकाने भी लगी हुइ है और यहाँ पे खम्बे दिखई दे रहे है बिजली के--

ये एक बहोत बड़ा तालाब है तालाब मे सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ हुए है और यहाँ पे--

यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र है समुद्र में समुद्र का पानी काला दिखाई दे रहा है किनारे में एक पानी का जहाज रखा हुआ है जब लोग समुद्र में मछलियाँ मारने के लिए जाते है तब इस नांव का इस्तेमाल करती है समुद्र के किनारे में--

पेड़ बना हुआ है यहाँ पे बड़े-बड़े चट्टान है।

गैराज का दुकान है जैसे लग रहा है यह किराने का दुकान है इसमे किराने के सामान है और ऊपर मे कुछ कार्टून मे टंगा हुआ है यहाँ पे मुस्लिम धर्म वाला कुछ लिखा हुआ है।

ये एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना हुआ है जब कोइ रेल आती है तो इस स्टेशन में रुके बिना आगे नहीं जाती है।